सड़क नजर ये आ रही है जहां पे ए हरि भरी झाड़ियां भी लगी हुई हैं।

सड़क के साथ मुझे कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है जहां पे गेट लगे हुए है।

ये दीवारों के ऑरेंज कलर के कर्टन भी दिख रहे हैं और कुछ लोग भी बैठे दिख रहे --

इस तस्वीर में मुझे एक और बहोत बड़ी स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही--

स्कूल के बाहर मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ शॉप्स नजर आ रही है शॉप के ऊपर में एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा--

शॉप के बाहर मुझे एक साइकल और कुछ बाइक्स भी खड़ी नजर आ रही है और दो डस्टबिन दिख रहे है।

गार्डन में मुझे बैठने के लिए बेंचेस भी दिख रहे हैं और आस पास बिल्डिंग्स भी--

बिल्डिंग के आसपास मुझे छोटी मोटी झाड़ियां भी नजर आ रही है और बहुत सारे लोग है चलते हुए दिख--

एक खेत नजर आ रहा है यहां पे हरी भरी घास लगी हुई--

एक घर नजर आ रहा है इसके आस पास मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे और--

और एक ब्लैक कलर की जीप भी दिख रही है। सड़क के दूसरी तरफ मुझे एक स्कूटर और बाइक भी नज़र आ रही है।

लेटर बॉक्स नजर आ रहें हैं और आस पास झाड़ियां भी दिख रही है।

पक्का रास्ता भी गार्डन के बीच में नजर आ रहा है।